अमरूद के भी पौधे हैं।

और डंटे गड़े हैं।

और उसके बगल में चैन गेट लगाएं गए हैं।

उसके बगल में काफी सारे छोटे छोटे पौधे लगे हैं और उसके बगल में बड़े बड़े पौधे लगे हैं।

के साइड में एक बड़ा सा पिलर खड़ा हुआ है और काफी सारे चेयर लगा --